पेड़ पौधे भी दीख रहे हैं घास भी दीख रही है। बोहत अच्छा दृश्य लग रहा --

मकान दीख दि रहा है। दीख रही है आदमी भी दिख रहा है।

ये एक दिख रहा है। पड़े-पौधे दीख रहे हैं।

बिल्डिंग दीख रही है। लाइट दीख रही है। जिम की मशीन दीख रही है।

गेट दिख रहा है। आदमी भी दिख रहे हैं।

रोड भी दिख रहा है घांस भी दिख रही है आसमान भी दिख रहा है।

मोठसाईल भी दीख रही है बिजली के तार भी दीख रहे हैं।

आदमी दीख रहा है। पेड़ पौधे दीख रहे हैं। आसमान दीख रहा है।